और एक पन्नी मे लिपटी हुई है इसमे यहां लोहे के पिलर हैं।

यहाँ पर एक दुकान और एक काउन्टर है उसके अंदर बोटल है ।

उसके आस-पास मे पोस्टर लगे हुए है लाइट गई है इसके ऊपर से तार गया है ।

एक बड़ी-सी पेड़ है और एक चैनल गेट है जिसमें क स्कूल में जिसमें खिड़की लगी हुई है दीवाल --

और यहां पर पेड़ भी है और यहां पत्थर है उसके पहाड़ के बीच में से पानी बह रहा है।